और काफी चट्टानें भी कट कर नीचे गिरी है।

कि रेलवे स्टेशन है जहां पर बहुत लोग दिख रहे हैं।

नीचे टायर भी लगा हुआ है फर्श साफ है।

और यहां पीछे पेड़ भी दिख रहा है।

ये कृष्ण भगवान की मूर्ति है जिस पर--

और काफी सुंदर मूर्ति लग रही है।

और रात का सीन दिख रहा है लाइट जल रही है।

बगल में यहाँ काफी लोग खड़े हुए हैं।

हर किनारे यहां पर पौधे और गमले भी रखे हुए हैं।

बगल मे एक पेड़ है और यहां एक गाड़ी भी खड़ी है।

पहाड़ दिख रहे हैं आसमान बिल्कुल साफ है।

किनारे टेबल्स के पानी रखा हुआ है और नमक दिख रहा है।

ऊपर लाइटें लगी हुई हैं और ऊपर की छत सफेद रंग की हैं।

नीचे चॉकलेट के लिए एक छोटा सा फ्रिज भी लगा हुआ है।